वहा पे जो है लगता है की कुछ हो रहा है जो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में लगता कुछ हो रहा है जो वहा पे बहुत सारे बहुत सारे बहुत आदमी भी है।

जो बहुत डबिया से नहीं दाढ़ी बना रहे है जो बहुत बड़िया है दाढ़ी बना रहा है और गुब्बारे से सजाया गया है जो सब कलर का गुब्बारा है जो बहुत बड़िया लग रहा है देखने मे--